देखो ये साइकिल खड़ी हुई है पहाड़ है खेत है कितना सुन्दर बना हुआ है ना बहुत सुन्दर|

यहाँ न घास वास पे ठंडा-ठंडा लगता है एकदम एक तो सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम ऐसे पार्क में जाना बड़ा मन लगता है।